रखा है आपको पसंद आए तो आप जरूर आइए।

आप देख सकते हैं अभी मैं तलाब के किनारे बैठा हूं या मेरे सामने से ये नजारे देखने में बहोत ही--

आप खुद देख सकते हैं कितना पुराना हो गया है अभी सुबह के छे बज रहे हैं अभी--

हम नेइ की इस घर का काम शुरू है अभी भी इसका ऊपर का टॉप का काम --